ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें खाना मिलता है जिसका नाम है द ग्रेट अर्बन ढाबा।

लगी हुई है पार्क को बहोत सारी टी_शर्ट बनाकर रखी हुई है और--

जो बिल्डिंग है इसमें नीचे रेड कलर की छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए है नीचे मिट्टी है।

जिसमें व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं।

और ये सुन्दर लगते हैं खूबसूरत लगते है डेकोरेशन के लिए काम आ--

येह बहोत अच्छी सीनरी लग रही है देखने में तो पीछे पेड़ है बड़ा सा तीन बाइक है एक अल्टो रिक्शा है।